यहाँ पर ये बोहोत बड़ी बोहत बड़ा पहाड़ है।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ा मैदान हें ।

के आजू-बाजू बोहोत सारी लम्बी-लम्बी बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हुई हैं और इन इमारतों के आजू-बाजू बहोत सारी पोस्टर भी लगे हुए हैं।

कमरे के फर्श का रंग हल्का-सा काला है और कमरे की दीवालों का रंग सफ़ेद है।

कमरे के अंदर दिवालो का रंग काला और सफ़ेद है।

वही एक बाजू में आदमी बैठा हुआ है।

के बाहर बोहोत सारे वाहन भी खड़े हुए हैं।

रोड पर एक बड़ा-सा वाहन भी जा रहा है। जिसका रंग काला हरा नीला लाल और सफ़ेद है।

ट्रेन के डिब्बो का रंग पीला और काला दिखाई दे रहा है।

रोड के सामने बोहोत सारी बड़ी-बड़ी लम्बी-लम्बी इमारते बनी हुई है।

और उसी के आजू-बाजू बोहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं और उन पेड़ो का रंग हरा है। आसमान भी दिखाई दे रहा है।